सर्किट दिखाई दे रही है पिल्लर दिखाई दे रहे है सामने कुछ सर्किट दिखाई दे रही है लाल रंग पट्टी बनी हुए है और तीन बल्ब लगे हुए दिखाई देते हुए नज़र--

एक स्टेज दिखाई दे रहा है स्टेज में एक सोफा दिखाई दे रहा है सोफा में एक काफी झुमरदार टेज है जिसमें चौकोर और गोल बने हुए हैं।

एक बड़ा ताजमहल जैसा मंदिर दिखाई दे रहा है उस मंदिर में अंदर लाइट जल रही है।

स्टेज दिखाई दे रहा है जिस मे डिनर का सेट लगा हुआ है पाव भाजी दिखाई दे रही है प्लेट है कुछ खाने रखने के --

एक प्रदूषण रहित दीपावली एक बड़ा पो बेनर लगा हुआ है जिसमे प्रदूषण रहित दीपावली मनाये ये पोस्टर मे लिखा हुआ है।